C में फ्रेंड फंक्शन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे फ्रेंड फंक्शन हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटू ओएस वर्जन 1110 g कम्पाइलर वर्जन 461 अब फ्रेंड फंक्शन के परिचय के साथ शुरू करते हैं
हम जानते हैं प्राइवेट डेटा क्लास के बाहर ऐक्सेसेबल नहीं होता है
प्राइवेट डेटा एक्सेस करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन प्रयोग करते हैं
फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेम्बर फंक्शन नहीं होता है
फ्रेंड फंक्शन ऑब्जेक्ट के उपयोग के बिना इन्वोक किया जा सकता है
फ्रेंड फंक्शन में पास हुआ आर्ग्यूमेंट इसके ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग होता है
अब फ्रेंड फंक्शन की घोषणा देखते हैं
फ्रेंड फंक्शन की घोषणा के लिए फ्रेंड कीवर्ड उपयोग होता है
फिर हम return type देते हैं
function name फंक्शन का नाम है
फिर हम क्लास के आर्ग्यूमेंट्स class name और ऑब्जेक्ट पास करते हैं
अब एक उदाहरण देखते हैं
मैंने एडिटर पर पहले ही एक कोड टाइप कर लिया है
मैं इसे खोलूंगी
इस प्रोग्राम में हम एडिशन ऑपरेशन क्रियान्वित करेंगे
ध्यान दें कि हमारा फाइल नेम frndसीपीप है
अब मैं कोड समझाती हूँ
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है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
फिर हमने क्लास फ्रंड घोषित की है
इसमें हमने प्राइवेट की तरह वेरिएबल्स आ और ब घोषित किये हैं
यहाँ हमने फंक्शन इनपुट को पब्लिक की तरह घोषित किया है
इसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं
यह कम्प्यूट की तरह हमारा फ्रेंड फंक्शन है
यहाँ हमने क्लास फ़1 के आर्ग्यूमेंट्स class name फ्रंड और ऑब्जेक्ट पास किये हैं
फिर हम क्लास को बंद करते हैं
अब हम फ्रेंड फंक्शन प्रयोग करके क्लास के प्राइवेट मेम्बर्स फ्रंड को एक्सेस कर सकते हैं
यहाँ हमने कम्प्यूट फंक्शन प्रयोग किया है
उसमे हम एडिशन ऑपरेशन क्रियान्वित करेंगे
हम वेरिएबल्स आ और ब जोड़ते हैं
और फिर वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं
यहाँ हम ऑब्जेक्ट फ़1 प्रयोग करके नॉन मेम्बर फंक्शन में प्राइवेट वेरिएबल्स एक्सेस करते हैं
यह हमारा मेन फंक्शन है
इसमें हम क्लास फ्रंड का एक ऑब्जेक्ट फ़ बनाते हैं
फिर हम ऑब्जेक्ट फ़ प्रयोग करके फंक्शन इनपुट को कॉल करते हैं
और यहाँ हम फंक्शन कम्प्यूट को कॉल करते हैं और फ़ को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करते हैं
आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन कम्प्यूट में आर्ग्यूमेंट फ़ को पास किया है
यह पास बाय वैल्यू मेथड का प्रयोग करके किया जाता है
फ़ फ़1 की वैल्यू में पास किया जाता है
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं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
अब टाइप करें g स्पेस फ्रंड डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस फ्रंड
एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश फ्रंड एंटर दबाएं
यहाँ प्रदर्शित होता है Enter थे वैल्यू ओएफ आ एंड ब मैं 8 और 4 एंटर करुँगी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
अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं
अब इसको सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फ्रेंड फंक्शन उदाहरण फ्रेंड इंट कम्प्यूट क्लास नेम फ्रंड और ऑब्जेक्ट फ़1
एक नियत कार्य में एक नंबर का वर्ग और घन ज्ञात करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
दर्शाये लिंक पर उपलब्ध वीडियो लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद